शटर बनी हुई दिखाई दे रही है और काउंटर अंदर की ओर कांच लगा हुआ दिखाई दे रहा है और सामने की और चेयर्स रखी हुई है।

दुकाने लगी हुई है और सामने की ओर रोड पर वाहन खड़े हुए है और लोग भी खड़े हुए है और एक ऑटो खड़ा हुआ है।

उठाने वाले यंत्र रखे हुए हैं और ऊपर की ओर सीलिंग में पंखे लगे हुए हैं और आसपास के लोग जिम करते हुए दिख रहे हैं।

एक शटर में ए_टी_एम बैंक बना हुआ है और साइड में एक्सिस बैंक बना हुआ --

और दीवार में खिड़किया लगी हुई है जिन में पर्दे डले हुए है और लाइट्स भी लगी हुई है।